इसमें एक रोड डला हुआ दिखाई दे रहा है जिसमें कुछ गेट लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

सामने कुछ मशीन रखी हुई दिख रही हैं नीचे टाइल्स भी लगी हुई दिखाई दे रही है।

यह एक शिव अह शिवाय कलेक्शन का फोटो दिखाई दे रहा है।

और कुछ पैंटी के डिब्बे भी रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

यह फोटो एक रेस्टोरेंट का फोटो दिखाई दे रहा है।

यह एक रोड दिखाई दे रहा है जिसमे कुछ बिल्डिंग बनी हुई दिखाई दे रही है।